यहां काफी बार दिखाई दे रहा है जो कि चारों तरफ कॉफी का फोटो कुछ दृश्य बनाया हुआ है।

सामने एक विवाह मंडप दिखाई दे रहा है जोकि गेट जैसा बना हुआ है आगे फूल पत्ती पूरा लगाई हुई है और नीचे कारपेट पूरा सजाया गया हुआ है।

सामने एक बस स्टैंड जैसा पार्किंग दिखाई दे रहा है जिसमें कि एक बस खड़ी हुई नजर दिख रही है।

और एक लड़का आगे से फोटो खींच रहा है और पार्क में एक स्टैचू भी दिख रहा है।

घड़ी भी दिखाई दे रहा है ऊपर सीलिंग फैन भी दिखाई दे रहा है।

सुधा आइटम्स की मिठाइयां नजर आ रही हैं।

आगे से आदमी भी चलते नजर आ रहा है और एक आदमी ट्रक के ऊपर खड़ा है और क्रेन को देख रहा है।